बिल्डिंग का रंग ऑरेंज और ग्रीन कलर में है।

बहुत सारे घास भी है।

शीशे के ऊपर बहोत सारे आर्टिफिशियल फ्लॉवर्स भी लटकाए गए हैं।

बिल्डिंग के बाहर बहुत सारे गाड़िया भी रखे हुए हैं इंसाने भी है।

तस्वीर में मुझे एक बड़ा सा रास्ता दिखाई दे रहा है रास्ते में बहुत सारे इंसाने भी हैं।

कमरे को सफेद रंग से पेंट किया गया है ऊपर में फैन भी लगाया हुआ है।

ऐसे की रैक ब्लू ग्रीन कलर में।

इस तस्वीर में मुझे एक बड़ा सा मैदान दिख रहा है मैदान--

बिल्डिंग के बाहर एक फ्लावर भी दिख रहा है।

गली में खिड़की और दरवाजा भी है।

बगल में सी_सी_टी_वी भी है एक बैनर भी लगाया गया है।

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारे बिल्डिंगे दिख रहे हैं।

तस्वीर पे मुझे एक कमरा दिखाई दे रहा है।

इंसाने भी दिख रहे है। दीवार में स्विच बोर्ड रखा गया है।

बहोत सारे इंसाने भी दिख रहे है।

बड़ा सा दीवार भी दिख रहा है।

दरवाजा और वेंटीलेटर भी दिख रहा है।

पल्घन में मुझे अंकल चिप्स भी दिखाई दे रहा है।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

एक बड़ा सा दिख रहा है।

तस्वीर पे मुझे एक दुकान दिख रहा है।

एक घर भी दिख रहा है।

घर में ट्यूबलाइट्स भी है। दीवार में स्विच बॉक्स भी लगाया गया है।

दरवाजा भी दिख रहा है।

दरवाज़ा के पास चेयर भी रखे गए है जो ये पिला रंग में है।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

एक ग्रीन कलर का सोफा भी दिख रहा है।